रानी लक्ष्मी बाई महिला बाल सम्मान कोच --

यह एक दुकान है इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी मछलियों को बेच रहा है और इसमें दो औरत भी इसका साथ दे रही है।

और एक छप्पर सा लगा रखा है और एक डंडा है और एक व्यक्ति इसमें चाय पीता हुआ दिख रहा है एक बाल्टी है और एक मग्गा भी दिखाई दे रहा है।

और एक व्यक्ति कैमरे से देख रहा है कि इसका लेविल कैसे निकाला जाए।

आप देख सकते हो यह एक नीचे पुस्तक भंडार की दुकान है हमारे यहां जैसे कि इसपे लिखा हुआ है और इसमें दो कैरम बोर्ड है इस दुकान पर।

ऐसे बहुत सारे स्टीकर लगे हुए हैं जो दुकान में और भी सामान टंगा है जैसे कि बैट है हरे कलर का और इसमें रेड कलर का भी बैट है बहुत सारी बॉल भी हैं।

और इस बिल्डिंग के अंदर कुछ व्यक्ति अपना समान खरीद रहे हैं एक व्यक्ति बाहर गेट पर अपना बैग लिए खड़ा हुआ है।

और एक व्यक्ति इसको देख रहा है कि इसमें क्या रखा हुआ है और एक लेडिज भी है और एक गार्ड है और बहुत सारी गाड़ियां हैं और साइड में एक बैनर लगा है।

और एक बाल्टी नीचे रखी हुई है और एक तिरपाल है ब्लैक कलर की एक स्कूटी भी खड़ी हुई है और कुछ कुर्सियां दिखाई दे रहे है एक मेज है टेबल है।

और सभी ने मास्क लगा रखा है और सभी ने अपनी कैप को लगा रखा है अपनी सेप्टी के लिए सभी ने अपने शूज पहने हुए हैं।

और एक खंभा और कुछ तारे किसी हुई है और इस बिल्डिंग में तीन फ्लोर है।

कुछ गाडियां और एक गेट है जिस पे ब्लैक कलर का पेंट हुआ है और एक गाड़ी के हैंडल पर एक हेलिमेंट है।

जो व्हाइट कार है और ऊपर एक फैन भी लगा हुआ है नीचे कुछ बॉक्सेस रखे हुए है।

और इस कंपनी के एक बैनर लगा है उसमें कार उतरी हुई है।

यह एक राजकीय इंटर कॉलेज है और इसमें आप देख सकते हैं इसके सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है।